ये भी चर्च दिखाई दे रहा है | जो ओ लाइटो से सजाया हुआ है ये पूरी तरह से और आचायी दिक् रहा हे |

यहाँ एक मंदिर दिखाई दे रहा है| जो पहाड़ के अंदर है और उस मंदिर के ऊपर नंदी का मूर्ति भी है |

यहाँ एक बुध्य का बड़ा स्टेचू दिख रहा है | मंदिर की तरह दिख रहा है | जिसके सामने ये कुछ लोग अंदर जा रहे है |

यहाँ एक बिल्डिंग नजर आ रही है सामने और रास्ता रोड भी नजर आ रहा है रोड पर बाइक है --

ये एक आदमी लोग बैठे हुए है | पीछे जड़ा भी हे और एक दरवाजा हे जो अन्दर जासकते है |